और एक कोई बोर्ड रखा हुआ है और मुझे पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे कई सारी बाईकें दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके मुंह पे ब्लर है।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

इस तस्वीर में मुझे एक घोड़ों का तबेला दिखाई दे रहा है जिसमें चार घोड़े हैं।

और वो भी सीखने आए हैं और चारों तरफ से कुछ घिरा हुआ है और हरा ग्राउंड है।

और बहोत सारे लोहे के सामान रखे हुए हैं।

और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है और हीर हरी भरी घासें भी।

तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिख रहा है।

बैलूनस भी लगे हुए हैं जो की केसरिया सफेद और हरा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जो क्रिस्टा आई_वी_एफ फर्टि फर्टिलिटी सेंटर है।

और लैपटॉप भी रखे हुए हैं और कई सारे चीजें भी रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारी रेड कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक गार्डन बहोत बड़ा दिख रहा है जिसमें हरी भरी घासे है और पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

जिन चारों के मुंह पे ब्लर है और एक पे नहीं है।

और कई सारे लोग की परछाइयां भी दिख रही हैं और पीछे स्कूल भी--

और एक माईटी भी है जहां पर कुम्फू सब सीख रहे हैं।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी और हरी घासे दिखाई दे रही हैं।